इस पिक्चर में बहुत सारी गाड़ी खड़ी है।

और इसके पीछे एक घर है जिसके ऊपर एक टंकी रखी है।

दो बल्ब लग रहे हैं।

और सामने की तरफ एक कट्टा भी है।

और पीछे पेड़ पौधे हैं बहुत सारे।

एक कार वॉशिंग सेंटर रिपेयरिंग जिसमें कि दो गाड़ी खड़ी है बहुत--

बहुत सारे बंबू लगे हैं सरिया लगा है।

एक काउंटर रखा है अलमीरा रखा है एक--

साइड में जिन्ना है एक मीटर है।

ये एक शादी का गार्डन है जिसमें बहुत सारी कुर्सी लग रही--

और खंभे है एक बहुत सारे पेड़ पौधे है।